उधर चला रहे हैं उधर पेड़ हैं उधर बिल्डिंग्स वगेरह है काफी सारे --

ट्रक दिखाई दे रहे हैं ।

और देखिये यहाँ काफी अँधेरा सटा हुआ है देखिये यहाँ पे बजरंग जी का हनुमान जी का उनका प्रसंग किया हुआ है ।

बस दिखाई दे रहे हैं उधर देखिये दिखाई दे रहे हैं ।

पढ़ाई कर रहे हैं आप देख रहे हैं उधर टीचर हैं टीचर बच्चे सबको ध्यान रख कर काफी स्मार्ट टीचर है और ये बच्चे को काफी ध्यान से पढ़ाई करवा रहे हैं ।

देखिए एक सैलून है और यह जेंट्स सैलून है देखिए यहाँ पे --

फील्ड है फील्ड में देखिए काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है। काफी बड़े दिखाई दे रहे है।